लोगों ने अपने हाथ मे ढ़ोलक पकड़े हुए हैं और महिलाओ ने अपने हाथ में झाल दो सब बजा आसपास से बहुत पेड़ हैं।

और आस-पास बहुत सारी लाइटें और कमरे में पंखे और ए.सी. लगी हुई है कमरे में खिड़कियां भी हैं।